तस्वीर एक कमरे के अंदर की है।

ऊपर की ओर एक मग रखा गया है।

एवं दीवार पे रेड कलर का छोटा छोटा स्टीकर है जिस पर सम परसेंट ऑफ लिखा हुआ है।

अंदर की ओर एक बड़ा सा एंट्री गेट बना हुआ है जिनको गेंदे के फूलों से सजाया गया है।

यह तस्वीर किसी कमरे के अंदर की है।

दो लोग इसमें चलते हुए जा रहे हैं उनके पीछे एक बच्चा भी है जो उनके साथ ही जा रहा है।

एक औरत ने बच्चा लिया है तथा पीला साड़ी पहन रखा है।

इस दुकान में तीन लोग खड़े हैं।

ये दीवारें सारी सफेद रंग की है बहुत सारे बेंचेज रखे हुए हैं।

यहां बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं जो बीज कलर के हैं।

नीचे की फर्श मार्बल से बनी हुई है।

नीचे की ओर कारपेट बिछा है लाल तथा हरे रंग का।

उधर बहोत सारे आदमी एवं औरतें खड़े हैं।

इसके ऊपर ब्लू कलर के बोर्ड पे भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है।

उस पर दो बड़े बड़े स्टिकर्स लगे हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

सब ने एक एक सफेद रंग की टोपी पेहन रखी है।

इसके पीछे बहोत बड़ा सा अपार्टमेंट है एवम् पार्क के बीच में नकली जिराफ बनाए गए हैं।

इसमें चलने के लिए फुटपाथ का रास्ता दिखाई दे रहा है।

पीछे घास फूस का बना कच्चा हाउस है बगल में एक औरत जो शूट पहन के खड़ी है।

इतने अंधेरे को देखकर लगता है कि यह तस्वीर रात के समय की ही है।